और जंगल में बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे झूला लगाए गए हैं।

और बगल में एक किराना दुकान भी है।

और सामने बहुत सारे बाइक भी लगाए हुए हैं।

और पीछे गेट भी दिख रहा है।

और उसके बगल में पोस्टर भी लगाया हुआ है।

और उपर में लाइट भी लगाया हुआ है।

और सामने तो तर्जुई भी रखा हुआ है।